इस फोटो में एक स्टोर दिखाई दे रहा हैजिसके काउंटर के टेबल के ऊपर एक कुम्प्यूटर नीला टेबल ब-बगल में रखा दिखाई दे रहा हैएक चटाई बिछी हुई है।

इस फोटो में एक हॉल नज़र आ रहा है जिसमे कांच लगे हुए हैं दर्पण के चारो तरफ बलब सेबाउंड्री बनी हुई है।

ऐसे फोटो में एक खेत नज़र आ रहा है जिसमे बड़े पत्ते वाली कोई फसल लगी हुई है जिसकी कुछ पत्तियां हरी और कुछ पत्तियां पीली दिखाई दे रही हैं बीच में लाल पत्ते भी नज़र आ रहे हैं।

सामने सफ़ेद बिल्डिंग और गार्डन के बीचों बीच एक गोल आकार बना हुआ है जिसमे पानी भरा दिखाई दे रहा है। एक लाल कलर की पटी दिखाई दे रही --

एस फोटो में एक बुद्ध भगवान की मूर्ति बैठी नजर आ रही है जिसका --

ये फोटो एक जंगल का नजर आ रहा हैं जिसमे बड़े-बड़े पत्थर दिख रहे हैं।

फोटो में एक सिल्वर कलर की एक गाड़ी का टायर खुला हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर का वॉनेट भी सामने का वॉनेट भी खुला नजर आ रहा है। जिसके सामने एक टूलबॉक्स रखा हुआ है। जिसमें नटबोल्ड दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक स्टेज बना दिखाई दे रहा है जिस में दो खम्बो पर गुलदस्ते हरे पीले नीले लाल फूलों से सजावट की गई है पीछे --